जेन्स मे और ट्रैक्स का काम हुआ है ऊपर लाइट बत्ती झूमर है और उ_ भ उजला लाइट बत्ती है और बीचे मे झूमर लगा हुआ है पंखा है सब कुछ है।

एक दुकान है जिस पर एक टेबल है ऊसपर उसका पर पैसा भेजने के लिए फोन पे गूगल पे पेटीएम उ सब लिखा हुआ है।

तीन ढू वू-सोफ़ा का जो गद्दा है उस ब्लू का है बहोत प्रिंटिग है बहोत अच्छा है।

ओर ए.टी.एम मशीन भी है और देखिए उजला का -कमाडी है इसमे ल् -लॉउक लगा हुआ है | ताल वाला सब लगा हुआ है। नीचे ट _मरबल लगा--

एक बिल्डिंग ब-ब-बना अथी बन रहा है बड़ा-सा जिसपे इंजीनियर है और सुपरवाईजरे है।

बिल्डिंग पर पाइप से अथी ऊपर प्लैस्टर या पेन्ट करने का रास्ता है।

ओर साइकिल का छाई नजर आ रहा है एक दो मुनस्य है और बहुत सारा समान दुकान मे नजर आ रहा है।

और एक आदमी हैं और नीचे एक खाने का सा-मम एक टेबल ऐसा हैं।

एक खेत है उसमें बहुत सारा बांदा कोबी का लगा हुआ है जिसमे बहोत सारा बांदा कोबी है।

और बहोत सारा पीछे और दीवाल है घिरा हुआ --

--और पेड़ भी नजर आ रहा है पेड़ मे भी बहुत सारा फूल है।

और एक कुर्सी भी है और फूल भी है और मू-- मुंबत्ती सब भी है।

रेलवे स्टेशन है जिसपे ट्रेन भी लगे हुए हैं कुछ पैसेंजर उतरे हुए हैं कुछ ट्रैन में बैठे हुए हैं और साइड में पहाड़े हैं और ब्रिज भी नज़र आ रहे हैं और बैठने वाला भी नज़र आ रहे हैं।

एक मॉल हैं जिसमे बहुत सारे कपड़े टांगे हुए हैं कुछ पहनाये हुए हैं और जैकेट हैं जिसमे काउंटर पर टांगे हुए हैं।